मैं यहां पर दो बड़े गेट देख पा रही हूं।

मैं यहां पर एक सड़क देख पा रही हूं इस सड़क के किनारे दो दुकान देख पा रही--

यहां पर मैं तीन व्यक्ति देख पा रही हूं।

मैं यहां पर एक फ्रिज देख पा रही हूं।

मैं यहां पर बहोत सारे पेड़ देख पा रही हूं।

मैं यहां पर गाय को चारा खाते हुए देख रही हूं।

मैं यहां पर गाय को लाल फंदे पर देख रही हूं।

मैं यहां पर कुछ बच्चे खेलते हुए देख पा रही हूं।

मैं दो कुर्सी रखी हुई देख पा रही हूं।

मैं यहां पर एक फ्लोर देख पा रही हूं।

मैं यहां पर सफेद पर्दे देख पा रही हूं।

मैं यहां पर साड़ी की दुकान देख पा रही हूं।

मैं यहां पर एक गाड़ी देख पा रही हूं।

मैं यहां पर एक बेड देख पा रही हूं।

ट्रिपल सेवन टु एट वन ट्रिपल एट थ्री है।

मैं यहां पर दो आदमी देख पा रही हूं।

मैं यहां पर एक सड़क देख पा रहीं हुं।

यह स्टेशन हरदुआ का है मैं यहां पर कुछ गमले रखे हुए देख पा रही हूं।